कपड़ा-उपड़ा टंगा हुआ है।

पियर लाल उज्जर हरा --

मकान के ऊपर हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं पोस्टर टंगा हुआ है उसमें लाइट है ।

और घास दिखाई दे रहा है दूभी --

टाउन शहर में दिखाई दे रहा है दुकान दुतल्ला एक नीचे एक ऊपर है बीचे बिच --

इधर प्लेटफार्म है | प्लेटफार्म के ऊपर बाउंड्री घेरा हुआ है लोहा का |

ये बस पर चढ़ने के लिए आदमी खड़ा है बस रुका हुआ है आदमी अंदर बैठा हुआ है बस में एक चहड़ गया है।

सामने गेट है गेट के अंदर में आदमी जायेगा घुसेगा कपड़ा खरीदेगा ।

भरा हुआ है | हेलमेट पेहना हुआ है साहब --

और नारियल का पेड़ है ।